हमेशा लगभग देखने को मिल जाता है।

रेलवे का साइट चल रहा है काम चल रहा है ओवरब्रिज उरिज बन सकता है यहाँ पर रेलवे का।

ए.टी.एम. दिख रहा है जहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी हुई है कैश निकालने के लिए और काफी अस्त-व्यस्त जगह दिख रही है कुछ कैश निकाल रहे हैं तो कुछ --